और यहाँ पे बहुत सी सारी चीजें भी रखी हुई हैं।

और यहाँ पे बहुत सारा आदमी भी है और ये लोग--

यहाँ पे एक मेडिकल का दुकान है और बहुत से सारे मेडिकल रखे का दवा रखा हुआ है और यहाँ--

क्रीम भी रखा हुआ है बहुत सारे और पाउडर भी है और यहां पे ये लोग--

है और एक दीवार कलर पिंक है और यहां पे--

यहाँ पे एक दुकान है और दुकान में बहुत सी सारी सामान रखी हुई है और सामान में ये एक--

खाना खा रहे हैं बैठ के और यहाँ पे कुछ आदमी खड़े भी हैं।

लोहे के टाइप का है और ये यहां पे एक मशीन लगा हुआ है।

बहुत ही सारे कपड़े रखे गए हैं और ब्लैक कलर का भी कपड़ा है।

यहां पे एक शुभ लक्ष्मी ए के का एक दुकान हैं और यहां पे --

हुआ है और ये ब्लैक कलर ब्लू कलर का जींस भी पहना हुआ है और ये--

बहुत सारे भैंसे खड़ी हैं जो टायर को लेकर के जाती हैं आती हैं और एक तरह--

यहाँ पे एक मशीन करी है और मशीन का कलर ग्रे है और ये मशीन से--

और ये यहाँ पे बहुत ही सारे ट्रक के यहाँ पे बहुत सारा और--

एक आदमी जो मशीनों का हेल्प कर रहा है कोई काम करने में और ये यहां पे बहुत सारी--

और यहाँपे एक बाइक भी लगी हुई है और दो-तीन दुकानें भी है और यहाँ पे फोम का--

अ डब्बा रखा गया है और उसमें मछली पैक होता है और यहाँ पे--

यहां पे एक मकान बना हुआ है और मकान के आगे एलबेस्टर्स हैं।

भी लगी हुई है और एक आदमी ग्रे कलर का शॉट पहन कर के स्कूटी पर बैठा भी हुआ है।

जो कि ब्लू ब्लू कलर का टी शर्ट पहना हुआ है और ब्लैक कलर का टोपी--

एक क्यू _ आर_ कोड भी लगा हुआ है और यहाँ पे दो फ्लैग भी लगाए गए हैं।

खाली हरे भरे पेड़ पौधे ही नजर आ रहे हैं और यहाँ पे--

अ कोई आदमी नहीं है और यह पूल का कलर व्हाईट --

और वहाँ एक किरान से उ उठ उसको उठाया जा रहा है किसी चीज को और यहाँ पे बहुत लोहे के सामान रखे हुए हैं।

ममोज बनाने के डब्बे रखे गए हैं और यहाँ पे इंडिया में --